इस चित्र में कुछ व्यक्ति हैं।

उसने येलो कलर की जर्सी पहनी है।

इस चित्र में लकड़ियों कि बल्लि लगी है।

इसमें कुछ बजरिया पड़ी है।

इनमें से एक डिब्बे का कलर येलो है।

यहां पर सर्दियों के कपड़े बिक रहे हैं।

और इस नदी का कलर ग्रे कलर का है।

और यहां पर बहोत सारे मकाने हैं।

कृष्णा जी ने हाथ में बांसुरी ले रखी है।

और सफर का आनंद उठा रहे हैं।

उस मकान पर येलो कलर का पेंट हुआ है।

इस मेज के पास तीन कुर्सियां रखी हैं।

और इसके पीछे कुछ सामान रखा हुआ है।

उस मकान के नीचे एक व्यक्ति खड़ा है।

और कुछ दीवालो पर येलो कलर का पेंट हुआ हुआ है।

और इस होटल की छतो में लाइट जल लई है जो कि बोहुत सुंदर है।

और इस चित्र में एक बोर्ड पर सैमसंग लिखा है।

और इस मेज के कोने पर एक व्यक्ति का हाथ दिख रहा है।

जो कि एक मैदान में है।

इस मैदान के बराबर में व बहोत वृक्ष खड़े हैं।

जो कि एक पेट्रोल पंप पर हैं।

जो की एक स्थान पर बैठे हैं।

इस छत पर दो ब्लैक कलर के टैंक रखे है।

और इन टैंकर के पास एक व्यक्ति खड़ा है।

इस चित्र में दो वाहन सड़क के किनारे खड़े हैं।